मुझे एक चित्र दिख रहा है चित्र में मुझे पेड़ दिख रहा है।

चित्र में मुझे किराने का समान दिख रहा है।

चित्र में मुझे मॉल टाइप हॉल दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक आदमी दिख रहा है।

चित्र में मुझे लाइटिंग दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं चित्र में कुछ कुर्सियाँ दिख रही हैं।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

चित्र में मुझे कुर्सी पर बैठे कुछ लोग दिख रहे हैं।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा हैं।

चित्र में मुझे बसे दिख रही है।

चित्र में मुझे बहोत सारा सामान दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे ऊंची पहाड़ दिख रही है।